ये एक मेडिकल हॉल है जिसका नाम है आदित्य मेडिकल --

यह एक बोहुत बड़ा हॉल है। यहाँ पे लाइट्स वगैरह पंखा वन्खा लगा हुआ है इसका

यहाँ पे घर बन रहा है जिसमे --

और ये रोड गया हुआ है अंदर जाने के लिए --